जानवी का पोस्टर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें --

इसपे एक मैदान इसपे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे एक दूकान लगी दिखाई दे रही है डेरी --

इसपे एक शादी का हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत खूबसूरत सजावट दिखाई दे रही है इसपे बहुत अँधेरा दिखाई दे रहा है।

इसपे एक मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे एक घर दिखाई दे रहा है घर का कलर सफेद दिखाई दे रहा है इसमें हरी-हरी घास दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही इसमें हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा इसमें हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे ।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

इसपे एक हॉल दिखाई दे रहा जिसपे कुर्सी टेबल रखे दिखाई दे रहे कुर्सियों का कलर येलो --

रेड कलर की कपना बिछा दिखाई दे रहा है इसमें बैनर लगा दिखाई दे रहा है इसमें लड़के ने --